दुकान के सामने बहुत सारे स्कूटी और बाइक खड़े हैं।

तस्वीर में एक ठेला नजर आ रहा हैं ।

मेला नजर आ रहा हैं।

मेले में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं।

लाइट लगाया हुआ हैं।

एक टेबल पे फ्लावर भी रखा हुआ हैं ।

हरे और सफेद रंग का हैं।

एक सूखा हुआ पेर हैं ।

अलमारी के नीचे एक पानी का जार --

एक दुकान नजर आ रहा हैं ।

ये किसी मैरेज हॉल का तस्वीर समझ में आ रहा हैं।

काफी अच्छे तरीके से सजाया गया हैं ।

एक आदमी रोड पे दिख रहा हैं।

जिनका शेप दिल का बनाया हुआ हैं ।

बहुत सारे पेर भी दिख रहे हैं।

एक रेड कलर का चेयर रखा हुआ हैं।

कुछ लड़के और लड़कियाँ योगा कर रहे हैं।

ये एक घाट नजर आ रहा हैं।

पास में बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ।

आस-पास में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

दीवाल से लगे कुछ बोरे रखे हुए हैं रेती दिख रहा हैं।

एक बाइक भी दिख रहा हैं आसपास में काफी ऊँचे-ऊँची इमारत हैं ।

दशहरा मेला में जो पंडाल बनता हैं।

भीर है काफी अच्छा भीर है।

फूलों से काफी अच्छा सजाया हुआ हैं ।

बिल्डिंग के पास एक बोर्ड लगा हुआ हैं ।

रोगियों के इलाज का--

परिवार कल्याण संस्थान पटना--

दुकान शायद नया ओपन हुआ हैं ।

बाजू में एक और दुकान हैं ।

देख के समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है।

एक काँच का दरवाजा हैं ।

जिसके अंदर एक आदमी खड़ा हैं।

एक लड़का छोटा सा दौड़ता हुआ जा रहा हैं पीछे गार्डन है।

गौतम बुद्ध के और छोटे-छोटे--

एक आदमी एक बड़े से लोहे के टेबल पर बैठा हैं।

एक पानी का बोतल हैं ।

इस तस्वीर में एक डांस क्लास दिख रहा हैं।

सामने में एक गार्डन भी दिख रहा हैं ।

एक बेकरी शॉप नजर आ रहा हैं।

जिसमें बहुत सारे चॉकलेट रखे हुए हैं ।

एक कॉफी का दुकान हैं।

एक तवा का दुकान हैं ।

जिसमें अपोलो फार्मेसी लिखा हैं ।

एक लाइन का खंबा दिखाई दे रहा हैं ।

गेट से एक कार निकलता हुआ नजर आ रहा हैं।

गंदा है कूड़े-कचरे बिखरे पड़े हैं।

इस तस्वीर में एक गार्डन नजर आ रहा हैं।

जिसपे काफी खूबसूरत--

गार्डन में कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

दूर में अड्वॅरटिज़मेन्ट बोर्ड भी नजर आ रहा हैं ।

इस तस्वीर में एक गार्डन नजर आ रहा हैं।

एक सोलर लाइट भी नजर आ रहा हैं।

इसमें बहुत सारे पेर लगे हुए हैं।

इमारत में बहुत सारी खिरकियाँ हैं।

इस तस्वीर में एक सैलून नजर आ रहा हैं।

सैलून में एक आदमी खड़ा हैं।

एक पंखा लगा हुआ हैं।

डेस्क पे एक लैपटॉप हैं।

होटल का कमरा दिख रहा हैं ।

कमरे में एक टी_वी लगाया हुआ हैं ।

एक ए_सी भी नजर आ रहा हैं ।

और एक पानी का बोतल रखा हुआ हैं।

एक चेयर भी दिख रहा हैं।

ये तस्वीर किसी होटल का रूम लग रहा हैं ।

एक हरे रंग का पर्दा दिख रहा हैं ।

एक कंबल भी दिख रहा हैं।

ये तस्वीरएक खुले हुए मैदान का हैं।

मैदान में योगा करते हुए दिख रहे हैं।

एक बड़ा सा मिरर लगाया हुआ हैं।

कुछ पंक पंखे टंगे हुए दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में यूनियन बैं--

एक रेड कलर का टी-शर्ट हैं।

इसमें बहुत सारे ब्लेजर रखे हुए हैं।

बैंग टांगे हुए नजर आ रही हैं।

एककार भी नजर आ रहा हैं।

ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हैं।

इसमें एक आई ट्वेन्टी कार नजर आ रही हैं।

एक लड़का दिखाई दे रहा हैं ।

जिसका नाम स्पाइडर द टांस से एंटर हैं ।

बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ--

डांस सीखते हुए नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे पेर नजर आ रहे हैं।

और कुछ लड़कियाँ नजर आ रही हैं।

बहुत सारे चॉकलेट नजर आ रहे हैं।

इसमें टेंपरेरी टैटू भी अवेलेबल का--